देखिए यहां पे बड़ा सा समुंदर नजर आ रहा है बहोत सारा पानी है।

देखिए सामने दो तीन घर बाजू बाजू में नजर आ रहे हैं।

ऊपर पार्टी पर स्कॉलर्स लिखा हुआ है।

पीला रंग किया हुआ है तीन आदमी हाथ जोड़े पूजा कर रहे है मूर्ति पे फूलों की माला है।

देखिए यहां पर बहुत सारी लड़कियां बैठी--

लगा हुआ है लाइट वगैरह भी लगे हैं।

वो आइस है छोटे बच्चे हैं सब इधर उधर खड़े है।

देखिए ये होटल दिख रही है कांच का दो बड़ा बड़ा सा--

एक आदमी सामने टेबल पर पैर फैलाये बैठा हुआ है।

सामने किसी चीज की दीवार बनी हुई है।

एक टेबल चेयर खाली है वो आगे की जाति वो बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

रखा हुआ है सामने खिड़की बंद नजर आ रही है।

बना हुआ है उस पर एक के बाद एक के बाद बहोत सारे पुतले--

रखें हुए हैं ये रोड पर एक बाइक खड़ी हुई हैं।

देखिए इस स्टेज पर एक आदमी एक औरत माइक लिए--

देखिए यहां पर एक साथ में बहुत सारी छोटी छोटी हरन खड़ी हुई है।

टेबल पर प्लेट गिलास वगैरा रखा हुआ है बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

दो तीन रिक्शा खड़ी है आगे एक लेडिस गाड़ी खड़ी है लेडिस पर दो लोग बैठे हुए है।